इसमें एक पेर है पेर के बगल में बहोत सारे पेड़ है।

बहोत तारे फुल लगे हुए है और बगीचे भी है।

और इधर गार्डन टाइप का भी बना हुआ है पेड़ भी है साथ में और इन्वेस्टर का घर भी है एक।

कूड़े की भी दुकान कही जा सकती है फ्रिज पे बहुत सारी आइसक्रीम भी रखे हुए--

और यहा पे इस बगल में एक कार्टून रखा हुआ है उधर से एक वाइट कलर का--

यह एक बोहोत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग के आगे बोहोत सारे अच्छे अछे पेड़ दिख रहे है ।

बड़ा है ये बू कलर के पेंट से पेंट हुआ है सामने एक गाड़ी में बैठा है ब्लू कलर पेंट और वाइट कलर का शर्ट है।

और जूता भी पहना हुआ है यहाँ पर चार मंदिर टाइप का बना हुआ है मंदिर के ऊपर वाला जो प्रकार होता है।

एक पिला कलर का स्कूल है स्कूल के साथ में तिन पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा--

ये पुलिस स्टेशन दिख रही है या पुलिस स्टेशन के बगल में एक कर्यालय भी है।

उसके आगे वो एक वाइट कलर की कार भी लगी हुई है और वो रोड के आगे ये सब बनी हुई है ।

यह बेड काफी बरा है बेड पे सोने में मजा आता है उधर बाहर का दृश्य बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर पेड़ उर लगे हुए हैं इधर टेबुल पे--

कलर्स का वाइट कलर का पंडाल भी लगा हुआ है और काफी खूबसूरत दिख रही है ये दृश्य इस पिक्चर में बहुत अच्छा चीज दिखाया गया है।

ऊपर ब्लैक कलर की रूबी है और स्टील का उतर ने वाला सीडी भी है अच्छा सा बना हुआ है।

इधर एक वाइट कलर का आदमी बेठा भी हुई है और--

काफी सारे लोग इस पर घूम रहे हैं बीच से एक रोड भी निकला हुआ है इस पर काफी सारे झाडीया या और फुल--

एक आदमी ड्रेस में पेट्रोल बाट रा--

और उसके आगे भी एक आदमी जारा है जो पेट्रोल पंप का ही कर्मचारी है।

उधर बहुत सारे बाइक भी लगे हुए हैं और यहां पर एक ट्रक भी दिखाई दे रही है। वाइट कलर का कुत्ता भी इधर घूम रहा है। उधर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहा पे वाइट कलर का फर्स भी है यहा पे सर्विस सेण्टर वियल है इस गाडी का--

और बहोत बड़ा क्लिम का गेट भी लगा हुआ है जो की--

बाहर से ही बोहोत सुन्दर दिख रहा है यहाँ पे गार्डन टाइप का भी एक चीज़ बनाया गया है जिसमे बोहोत सारे फूल लगे हुए --

गुलदस्ते में काफी अच्छे अच्छे फुल लहे हुए है।

शर्ट पहना है एक आदमी ब्लू कलर का शर्ट पहना है एक आदमी पीला कलर की शर्ट पहना है उसके आगे एक बिल्डिंग है जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है।

ये मैंदान काफी बरा है जिसकी में एक पीपल का पेर भी है और काफी सारे जुले भी है ए --

यहा पे एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है स्कूल के बच्चे के आते जाते हुए--

बनाया जा रहा है जिसपे बहोत सारे इक लगे हुए है और एक लरकि की यहा पे--

और यहा पे अ आस पास बहोत सारे खेत भी है।

हा और यहा पे एक सलूक भी बनाया गया है जिसकी वजह से--

तस्वीर को काहे और पिलर्स भी लगे हुए है जो की--

ब्राउन कलर का बेंच है यहा पर इंडिया का बहुत बड़ा--

यह एक बालकनी की तस्वीर दिखाई गयी है रेड कलर के घर का बालकनी है ये यहां पे बोहत सारे गुलदस्ता लगे हुए है यहां पे बोहत सारी फूल और झाडिया भी लगी हुई है ।

यहा पे एक आदमी ब्लू कलर का ड्रेस पेन कर पेट्रोल --

एक तस्वीर दिख रही है जो की काफी सुन्दर दिख रही है।

यह एक हॉस्पिटल की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमे एक पंजाबी आदमी काम कर रहा है ।

दर तीन बेठेने का ब्लैक कलर का भी चेयर रखा हुआ है डस्टबिन भी रखी हुई है उसके बगल में --

और यहा पे माता की तस्वीर भी बनाई गई है।

दिख रही है जहां पे मुंह में एक आदमी लेते हुए दिख रहा है और ले लिया मुंह में--